व्हाइट कलर के ग्रीन कलर के पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

अ रेड कलर का लांचा टाइप का और ब्लैक कलर की लैगी पहनी हुए है इसके पीछे वू --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं ये बहोत बड़ा से पहाड़ है जिसमें ब्लैक अ कलर की ईंटे दिख रही है और ग्रीन कलर के--

स्कूटी ब्लैक कलर की है बाइक भी ब्लैक कलर की है और ये यहाँ पर दो आदमी भी है एक ब्लू कलर की जींस पहनी हुये ब्लैक कलर की शर्ट --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहाँ पर एक ब्राउन कलर का शटर है अअअ जिसके अंदर लिखा है द एक्शन रूम इस स्पीक ए टॉक --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक शासकीय महाविद्यालय हैं जो की वाइट कलर की एक बिल्डिंग है बोहत बड़ी सी--

डांस करते हुए दिख रही है और यह बैंगनी और ब्लैक कलर की टी शर्ट पहने हुए ब्लू कलर --

अउ व्हाइट कलर की फ्लैश और ब्राउन कलर की मेज भी दिखाई दे रही है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह लॉटरी लैब है वि यन केयर के लिए ओर फैनैन्सी के लिए है जोकि --

ए बोर्ड लगे हुए हैं ब्लू कलर का एक है एक वाइट कलर का है एक रंग-बिरंगा एक ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लैक --

मशीन के पुर्जे पड़े हुए है जोकि दरवाजो या गाड़ियो के यूज में आते हैं।

येलो कलर का थीम है और ब्लैक कलर की टीवी है यहाँ पर कुर्सियां ब्राउन कलर की मेज येलो कलर की --

और ब्लू कलर की एक शर्ट पहने लड़का खड़ा हुआ है और एक तम्बू भी लगा--